लकड़ियां पड़ी है और यहां पर मिट्टी है इसके आस पास--

बीच में गली भी है यहां पे बैठने के लिए बेंचेज भी लगी हुई है बहुत सारे--

यहां पे एक बाइक भी खड़ा है उसके पास एक लेडी खड़ी है उसके पास दो बाईकें हैं।

यह एक दुकान है दुकान का नाम श्याम--

एक गाय है एक भैंस है और एक छोटी भैंस है।

यह एक यह एक कैडबरी है कैडबरी

गाड़ी की चार बारिया है और ब्लैक कलर के टेर है रेड कलर के आगे नंबर प्लेट भी लगी है गाड़ी के ऊपर वाली साइड भी --